नीचे की तरफ टेबल भी रखी है अंदर की तरफ और अ --

और पीछे की तरफ अ एक इंसान जो बैठा हु --

व्हाइट कलर की बिल्डिंग भी यहा पर है।

यहां पर तार ओर से फेंसिंग हो रही है।

और यहाँ पर सामने खंभे भी दिख रहे हैं। एक पेड़ भी दिख रहा है। आसमान भी दिख रहा है।

और बहोत सारे पेड़ यहा पर मुझे दिख रहे हैं और पत्थर भी यहा पर रखा हुआ है एक।

यहां पर मुझे दिख रहे हैं।

सामने बहोत भीर दिख रहा है। सामने एक बूढ़ा आदमी ने कुरता पैजामा पहना है उसके पास वाले आदमी ने --

इसमे वो गांधी जी के बारे मे कुछ लिखा है पीछे फ्लैग इंडिया फ्लैग भी बना हुआ है।

इस पे एक लड़का अ ति खड़ा हुआ है जो कि आधा फोटो है जिसका।

इसमे टेंट वगेरह लगे हुए है डिज़ाइनिंग वाले व्हाइट और रेड अ सार्री ऑरेंज कलर के।

और एक दिवाल भी दिख रही है। यहाँ पर अ लाइट येलो कलर का पैंट हो रहा है।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा तालाब मुझे दिख रहा है और यहाँ पर तालाब भी में थोड़ा गंदा पानी टाइप का है। नदी --

और गाय भी यहाँ पर बहोत सारी बनी हुई हैं। एक बाल्टी भी रखी हुई है पीछे की तरफ चद्दर सेट हो रहा है।

और यहाँ पर बोहोत सारे पेड़ पौधे भी मुझे दिख रहे हैं।

और सामने की तरफ एक कांच है।

यहाँ पर एक अ- दुकान है जिसके बगल में भी एक शॉप दिख रही है जिसमें एक लड़का चड्ढा पहन कर --